यह एक मॉल है जिस का नाम वी-मार्ट है यहाँ पे कपड़े बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलते हैं यहाँ पे ऑफ़र चल रहा है रुपीस बन नाइनटी नाइन का ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और बड़ा।

ये कुछ दुकाने है जो अभी बंद है जिसका नाम --